और पीछे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

एक घड़ी भी लगी हुई है।

इसमें हरी घास भी लगी हुई है।

भीत्तर इसमें लाइट भी लगी हुई है।

कुछ में शीशे का गेट लग रहा नीचे फर्श भी हो रहा।

और इसमें एक साइड सोफे भी हैं।

और इसमें कुछ पन्नियां भी पड़ी हुई है।

और उसमें हल्के-हल्के पेड़ भी दिख रहे हैं और उसमें पुराना डिजाइन भी निकला हुआ है।

इन पर कुछ लिखा हुआ है।

पीछे बहुत सारे मकान भी दिख रहे--

और वहां कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इसमें दरवाजे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक सड़क दिख रही --

इसमें एक सिलेंडर धरा दिख रहा--

एक गमला लग रहा है इसमें।

और एक टेबल पे जग रखा हुआ है और कुछ कटोरिया भी रखी हुई है।

इसमें शीशे की खिड़कियां भी लगी हुई है।

और वह अपना प्रोजेक्ट बना रही है और उनके टीचर ने मास्क लगा रखा है।